यहां मंदिर पर दिन रात भजन होता है।

यहां पर हरी भरी ग्रीनरी भी हमें दिखाई दे रही है।

ऊपर गमले भी हम यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक--

ये घर बहुत सजा हुआ है।

ये ग्राउंड हरा भरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और इसकी सुंदरता--

ये सोफे बहुत बड़े हैं इस सोफे की सजावट बहोत ही--

ये एक बहुत बड़ा और सुंदर सा हरा--

बरा और विशाल समुंदर है इस समुंदर--

और दूर दूर से यात्री यहां पर--

इस दुकान पर यात्री दिन रात--